मेरे प्यारे देशवासियो आप सबको नमस्कार
देश के हर कोने में ज़्यादातर परिवार अपने बच्चों की एक्साम में जुटे हुए होंगे जिनके एक्साम ख़त्म हो गए होंगे वहाँ कुछ रिलीफ का माहौल होगा और जहाँ एक्साम चलते होंगे उन परिवारों में अभी भी थोड़ाबहुत तो प्रेशर होगा ही होगा
लेकिन ऐसे समय मैं यही कहूँगा कि पिछली बार मैंने जो मन की बात में विद्यार्थियों से जोजो बातें की हैं उसे दोबारा सुन लीजिए परीक्षा के समय वो बातें ज़रूर आपको काम आएँगी
आज 26 मार्च है 26 मार्च बांग्लादेश का स्वतंत्रता का दिवस है
अन्याय के ख़िलाफ़ एक ऐतिहासिक लड़ाई बंगबन्धु के नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता की अभूतपूर्व विजय
आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं बांग्लादेश के नागरिक भाइयोंबहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुतबहुत शुभकामनायें देता हूँ
और यह कामना करता हूँ कि बांग्लादेश आगे बढ़े विकास करे और बांग्लादेशवासियों को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारत बांग्लादेश का एक मज़बूत साथी है एक अच्छा मित्र है और हम कंधेसेकंधा मिला करके इस पूरे क्षेत्र के अन्दर शांति सुरक्षा और विकास में अपना योगदान देते रहेंगे
हम सबको इस बात का गर्व है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर उनकी यादें हमारी एक साझी विरासत है
बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना है
गुरुदेव टैगोर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1913 में वे न केवल नोबेल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे बल्कि उन्हें अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की भी उपाधि दी थी
और जब 1919 में जलियांवाला बाग़ पर अंग्रेज़ों ने क़त्लेआम किया तो रवीन्द्रनाथ टैगोर उन महापुरुषों में थे जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और यही कालखंड था जब 12 साल के एक बच्चे के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव हुआ था
किशोरअवस्था में खेतखलिहान में हँसतेकूदते उस बालक को जलियांवाला बाग़ के नृशंस हत्याकांड ने जीवन की एक नयी प्रेरणा दे दी थी
और 1919 में 12 साल का वो बालक भगत हम सबके प्रिय हम सबकी प्रेरणा शहीद भगतसिंह आज से तीन दिन पूर्व 23 मार्च को भगतसिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था
और हम सब जानते हैं 23 मार्च की वो घटना भगतसिंह सुखदेव राजगुरु के चेहरे पर माँभारती की सेवा करने का संतोष मृत्यु का भय नहीं था जीवन के सारे सपने माँभारती की आज़ादी के लिए समाहित कर दिए थे
और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा हैं
भगतसिंह सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की गाथा को हम शब्दों में अलंकृत भी नहीं कर पाएँगे
और पूरी ब्रिटिश सल्तनत इन तीनों युवकों से डरती थी
जेल में बंद थे फांसी तय थी लेकिन इनके साथ कैसे आगे बढ़ा जाये इसकी चिंता ब्रिटिशों को लगी रहती थी
और तभी तो 24 मार्च को फांसी देनी थी लेकिन 23 मार्च को ही दे दी गयी थी चोरीछिपे से किया गया था जो आम तौर पर नहीं किया जाता
और बाद में उनके शरीर को आज के पंजाब में ला करके अंग्रेजों ने चुपचाप जला दिया था
कई वर्षों पूर्व जब पहली बार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था उस धरती में एक प्रकार के वाइब्रेशन मैं अनुभव करता था
और मैं देश के नौजवानों को ज़रूर कहूंगा जब भी मौका मिले तो पंजाब जब जाएँ तो भगतसिंह सुखदेव राजगुरु भगतसिंह की माताजी और बटुकेश्वर दत्त की समाधि के स्थान पर अवश्य जाएँ
यही तो कालखंड था जब आज़ादी की ललक उसकी तीव्रता उसका व्याप बढ़ता ही चला जा रहा था
एक तरफ़ भगतसिंह सुखदेव राजगुरु जैसे वीरों ने सशस्त्र क्रांति के लिये युवकों को प्रेरणा दी थी
तो आज से ठीक सौ साल पहले 10 अप्रैल 1917 महात्मा गाँधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था
यह चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी का वर्ष है
भारत की आज़ादी के आन्दोलन में गाँधी विचार और गाँधी शैली इसका प्रकट रूप पहली बार चंपारण में नज़र आया
आज़ादी की पूरी आंदोलन यात्रा में यह एक टर्निंग पॉइंट था ख़ास करके संघर्ष के तौरतरीक़े की दृष्टि से
यही वो कालखंड था चंपारण का सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद में मिलमज़दूरों की हड़ताल और इन सबमें महात्मा गाँधी की विचार और कार्यशैली का गहरा प्रभाव नज़र आता था
1915 में गाँधी विदेश से वापस आए और 1917 में बिहार के एक छोटे से गाँव में जाकर के उन्होंने देश को नई प्रेरणा दी
आज हमारे मन में महात्मा गाँधी की जो छवि है उस छवि के आधार पर हम चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं
कल्पना कीजिए कि एक इंसान जो 1915 में हिन्दुस्तान वापस आए सिर्फ़ दो साल का कार्यकाल
न देश उनको जानता था न उनका प्रभाव था अभी तो शुरुआत थी
उस समय उनको कितना कष्ट झेलना पडा होगा कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इसका हम अंदाज़ कर सकते हैं
और चंपारण सत्याग्रह ऐसा था कि जिसमें महात्मा गाँधी के संगठन कौशल महात्मा गाँधी की भारतीय समाज की नब्ज़ को जानने की शक्ति महात्मा गाँधी अपने व्यवहार से अंग्रेज सल्तनत के सामने ग़रीब से ग़रीब अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को संघर्ष के लिये संगठित करना प्रेरित करना संघर्ष के लिये मैदान में लाना ये अद्भुत शक्ति के दर्शन कराता है
और इसलिये जिस रूप में हम महात्मा गाँधी की विराटता को अनुभव करते हैं
लेकिन अगर सौ साल पहले के गाँधी को सोचें उस चंपारण सत्याग्रह वाले गाँधी को तो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही अध्ययन का विषय है
सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कैसे की जा सकती है ख़ुद कितना परिश्रम करना होता है और गाँधी ने कैसे किया था यह हम उनसे सीख सकते हैं
और वो समय था जितने बड़ेबड़े दिग्गज नेताओं के हम नाम सुनते हैं गाँधी ने उस समय राजेंद्र बाबू हों आचार्य कृपलानी जी हों सबको गाँवों में भेजा था
लोगों के साथ जुड़ करके लोग जो काम कर रहे हैं उसी को आज़ादी के रंग से रंग देना इसके तरीक़े सिखाए थे
और अंग्रेज़ लोग समझ ही नहीं पाए कि ये गाँधी का तौरतरीका क्या है
संघर्ष भी चले सृजन भी चले और दोनों एक साथ चले
गाँधी ने जैसे एक सिक्के के दो पहलू बना दिए थे एक सिक्के का एक पहलू संघर्ष तो दूसरा पहलू सृजन
एक तरफ़ जेल भर देना तो दूसरी तरफ़ रचनात्मक कार्यों में अपने आप को खपा देना
एक बड़ा अद्भुत बैलेंस गाँधी की कार्यशैली में था
सत्याग्रह शब्द क्या होता है असहमति क्या हो सकती है इतनी बड़ी सल्तनत के सामने असहयोग क्या होता है एक पूरी नई विभावना गाँधी ने शब्दों के द्वारा नहीं एक सफल प्रयोग के द्वारा प्रस्थापित कर दी थी
आज जब देश चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहा है तब भारत के सामान्य मानव की शक्ति कितनी अपार है उस अपार शक्ति को आज़ादी के आन्दोलन की तरह स्वराज से सुराज की यात्रा भी सवासौ करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति परिश्रम की पराकाष्ठा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूल मन्त्र को ले करके देश के लिये समाज के लिये कुछ करगुज़रने का अखंड प्रयास ही आज़ादी के लिये मरमिटने वाले उन महापुरुषों के सपनों को साकार करेगा
आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तब कौन हिन्दुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा कौन हिन्दुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिये हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो
सवासौ करोड़ देशवासियों की ये बदलाव की चाह ये बदलाव का प्रयास यही तो है जो नये भारत न्यू इंडिया इसकी मज़बूत नींव डालेगा
न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है न ही किसी राजनैतिक दल का मैनिफेस्टो है और न ही ये कोई प्रोजेक्ट है
न्यू इंडिया सवासौ करोड़ देशवासियों का आह्वान है
यही भाव है कि सवासौ करोड़ देशवासी मिलकर के कैसा भव्य भारत बनाना चाहते हैं
सवासौ करोड़ देशवासियों के मन के अन्दर एक आशा है एक उमंग है एक संकल्प है एक चाह है
मेरे प्यारे देशवासियो अगर हम थोड़ा सा अपनी निजी ज़िन्दगी से हट करके संवेदनासभर संवेदना से भरी नज़र से समाज में चल रही गतिविधियों को देखेंगें हमारे अगलबगल में क्या हो रहा है उसको जाननेसमझने का प्रयास करेंगे तो हम हैरान हो जाएँगे कि लक्षावधि लोग निस्वार्थ भाव से अपनी निजी ज़िम्मेवारियों के अतिरिक्त समाज के लिये शोषितपीड़ितवंचितों के लिये ग़रीबों के लिये दुखियारों के लिये कुछनकुछ करते हुए नज़र आते हैं
और वे भी एक मूक सेवक की तरह जैसे तपस्या करते हों साधना करते हों वो करते रहते हैं
कई लोग होते हैं जो नित्य अस्पताल जाते हैं मरीज़ों की मदद करते हैं अनेक लोग होते हैं पता चलते ही रक्तदान के लिए दौड़ जाते हैं अनेक लोग होते हैं कोई भूखा है तो उसके भोजन की चिंता करते हैं
हमारा देश बहुरत्ना वसुन्धरा है
जनसेवा ही प्रभुसेवा यह हमारी रगों में है
अगर एक बार हम उसको सामूहिकता के रूप में देखें संगठित रूप में देखें तो ये कितनी बड़ी शक्ति है
जब न्यू इंडिया की बात होती है तो उसकी आलोचना होना विवेचना होना भिन्न नज़रिये से उसे देखना ये बहुत स्वाभाविक है और ये लोकतंत्र में अवकार्य है
लेकिन ये बात सही है कि सवासौ करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें संकल्प को सिद्ध करने के लिये राह तय कर लें एककेबादएक क़दम उठाते चलें तो न्यू इंडिया सवासौ करोड़ देशवासियों का सपना हमारी आँखों के सामने सिद्ध हो सकता है
और ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें बजट से होती हैं सरकारी प्रोजेक्ट से होती हैं सरकारी धन से होती हैं
अगर हर नागरिक संकल्प करे कि मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करूँ अगर हर नागरिक संकल्प करे कि मैं मेरी ज़िम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊँगा अगर हर नागरिक संकल्प करे कि सप्ताह में एक दिन मैं पेट्रोल्डीजल का उपयोग नहीं करूँगा अपने जीवन में चीज़ें छोटीछोटी होती हैं
आप देखिए इस देश को जो न्यू इंडिया का सपना सवासौ करोड़ देशवासी देख रहे हैं वो अपनी आँखों के सामने साकार होता देख पाएँगे
कहने का तात्पर्य यही है कि हर नागरिक अपने नागरिक धर्म का पालन करे कर्तव्य का पालन करे
यही अपने आप में न्यू इंडिया की एक अच्छी शुरुआत बन सकता है
आइए 2022 भारत की आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं
भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को याद करते हैं चंपारण के सत्याग्रह को याद करते हैं तो क्यों न हम भी स्वराज से सुराज की इस यात्रा में अपने जीवन को अनुशासित करके संकल्पबद्ध करके क्यों न जोड़ें
मैं आपको निमंत्रण देता हूँ आइए
मेरे प्यारे देशवासियो मैं आज आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ
पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना बहुत बड़ी मात्रा में लोग डिजिटल पेमेंट डिजिधन आंदोलन में शरीक़ हुए
बिना नक़द कैसे लेनदेन की जा सकती है उसकी जिज्ञासा भी बढ़ी है ग़रीब से ग़रीब भी सीखने का प्रयास कर रहा है और धीरेधीरे लोग भी बिना नक़द कारोबार कैसे करना उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं
डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट के अलगअलग तरीक़ों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है
BHIMApp इसको प्रारंभ किए हुए अभी दोढाई महीने का ही समय हुआ है लेकिन अब तक क़रीबक़रीब डेढ़ करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है
मेरे प्यारे देशवासियो काले धन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है
सवासौ करोड़ देशवासी इस एक वर्ष में ढाई हज़ार करोड़ डिजिटल लेनदेन का काम करने का संकल्प कर सकते हैं क्या हमने बजट में घोषणा की है
सवासौ करोड़ देशवासियों के लिये ये काम अगर वो चाहें तो एक साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं छः महीने में कर सकते हैं
ढाई हज़ार करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर हम स्कूल में फी भरेंगे तो कैश से नहीं भरेंगे डिजिटल से भरेंगे हम रेलवे में प्रवास करेंगे विमान में प्रवास करेंगे डिजिटल से पेमेंट करेंगे हम दवाई ख़रीदेंगे डिजिटल पेमेंट करेंगे हम सस्ते अनाज की दुकान चलाते हैं हम डिजिटल व्यवस्था से करेंगे
रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में ये कर सकते हैं हम
आपको कल्पना नहीं है लेकिन इससे आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं और काले धन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई के आप एक वीर सैनिक बन सकते हैं
पिछले दिनों लोकशिक्षा के लिये लोकजागृति के लिये डिजिधन मेला के कई कार्यक्रम हुए हैं
देश भर में 100 कार्यक्रम करने का संकल्प है
8085 कार्यक्रम हो चुके हैं
उसमें इनाम योजना भी थी
क़रीब साढ़े बारह लाख लोगों ने उपभोक्ता वाला ये इनाम प्राप्त किया है 70 हज़ार लोगों ने व्यापारियों के लिये जो इनाम था वो प्राप्त हुआ है
और हर किसी ने इस काम को आगे बढ़ाने का संकल्प भी किया है
14 अप्रैल डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मजयंती है
और बहुत पहले से जैसे तय हुआ था 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मजयंती पर इस डिजिमेला का समापन होने वाला है
सौ दिन पूरे हो करके एक आख़िरी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है बहुत बड़े द्रव का भी उसमें प्रावधान है
मुझे विश्वास है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मजयंती का जितना भी समय अभी हमारे पास बचा है BHIMApp का हम प्रचार करें
नक़द कम कैसे हो नोटों का व्यवहार कम कैसे हो उसमें हम अपना योगदान दें
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे ख़ुशी है कि मुझे हर बार जब भी मन की बात के लिये लोगों से सुझाव माँगता हूँ अनेकअनेक प्रकार के सुझाव आते हैं
लेकिन ये मैंने देखा है कि स्वच्छता के विषय में हर बार आग्रह रहता ही रहता है
मुझे देहरादून से गायत्री नाम की एक बिटिया ने जो कि 11वीं की छात्रा है उसने फ़ोन करके एक मेसेज भेजा है
आदरणीय प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री जी आपको मेरा सादर प्रणाम
सबसे पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ कि आप इस चुनाव में आपने भारी मतों से विजय हासिल की है
मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ
मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को यह समझाना होगा कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है
मैं रोज़ उस नदी से हो कर जाती हूँ जिसमें लोग बहुत सा कूड़ाकरकट भी डालते हैं और नदियों को दूषित करते हैं
वह नदी रिस्पना पुल से होते हुए आती है और मेरे घर तक भी आती है
इस नदी के लिये हमने बस्तियों में जा करके हमने रैली भी निकाली और लोगों से बातचीत भी की परन्तु उसका कुछ फ़ायदा न हुआ
मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एक टीम भेजकर या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से इस बात को उजागर किया जाए धन्यवाद
देखिए भाइयोबहनो 11वीं कक्षा की एक बेटी की कितनी पीड़ा है
उस नदी में कूड़ाकचरा देख कर के उसको कितना गुस्सा आ रहा है
मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ
मैं यही तो चाहता हूँ सवासौ करोड़ देशवासियों के मन में गन्दगी के प्रति गुस्सा पैदा हो
एक बार गुस्सा पैदा होगा नाराज़गी पैदा होगी उसके प्रति रोष पैदा होगा हम ही गन्दगी के खिलाफ़ कुछनकुछ करने लग जाएँगे
और अच्छी बात है कि गायत्री स्वयं अपना गुस्सा भी प्रकट कर रही है मुझे सुझाव भी दे रही है लेकिन साथसाथ ख़ुद ये भी कह रही है कि उसने काफ़ी प्रयास किए लेकिन विफलता मिली
जब से स्वच्छता के आन्दोलन की शुरुआत हुई है जागरूकता आई है
हर कोई उसमें सकारात्मक रूप से जुड़ता चला गया है
उसने एक आंदोलन का रूप भी लिया है
गन्दगी के प्रति नफ़रत भी बढ़ती चली जा रही है
जागरूकता हो सक्रिय भागीदारी हो आंदोलन हो इसका अपना महत्व है ही है
लेकिन स्वच्छता आंदोलन से ज़्यादा आदत से जुड़ी हुई होती है
ये आंदोलन आदत बदलने का आंदोलन है ये आंदोलन स्वच्छता की आदत पैदा करने का आंदोलन है आंदोलन सामूहिक रूप से हो सकता है
काम कठिन है लेकिन करना है
मुझे विश्वास है कि देश की नयी पीढ़ी में बालकों में विद्यार्थियों में युवकों में ये जो भाव जगा है ये अपनेआप में अच्छे परिणाम के संकेत देता हैI आज की मेरी मन की बात में गायत्री की बात जो भी सुन रहे हैं मैं सारे देशवासियों को कहूँगा कि गायत्री का संदेश हम सब के लिये संदेश बनना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो जब से मैं मन की बात कार्यक्रम को कर रहा हूँ प्रारंभ से ही एक बात पर कई सुझाव मुझे मिलते रहे हैं और वो ज़्यादातर लोगों ने चिंता जताई है फूड वास्टेज के संबंध में
हम जानते हैं कि हम परिवार में भी और सामूहिक भोजन समारोह में भी ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट में ले लेते हैं
जितनी चीज़ें दिखाई दे सब सारी की सारी प्लेट में भर देते हैं और फिर खा नहीं पाते हैं
जितना प्लेट में भरते हैं उससे आधा भी पेट में नहीं भरते हैं और फिर वहीं छोड़ कर निकल जाते हैं
आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़ें तो ये कितने ग़रीबों का पेट भर सकता है
ये विषय ऐसा नहीं है कि जो समझाना पड़े
वैसे हमारे परिवार में छोटे बालकों को जब माँ परोसती है तो कहती है कि बेटा जितना खा सकते हो उतना ही लो
कुछनकुछ तो प्रयास होता रहता है लेकिन फिर भी इस विषय पर उदासीनता एक समाजद्रोह है ग़रीबों के साथ अन्याय है
दूसरा अगर बचत होगी तो परिवार का भी तो आर्थिक लाभ है
समाज के लिये सोचें अच्छी बात है लेकिन ये विषय ऐसा है कि परिवार का भी लाभ है
मैं इस विषय पर ज़्यादा आग्रह नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जागरूकता बढ़नी चाहिए
मैं कुछ युवकों को तो जानता हूँ कि जो इस प्रकार के आंदोलन चलाते हैं उन्होंने मोबाइल App बनाए हैं और कहीं पर भी इस प्रकार की जूठन पड़ी है तो लोग बुलाते हैं वो लोग सब इकठ्ठा करते हैं और इसका सदुपयोग करते हैं मेहनत करते हैं और हमारे ही देश के नौजवान ही करते हैं
हिंदुस्तान के हर राज्य में कहींनकहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे
उनका जीवन भी हम लोगों को प्रेरणा दे सकता है कि हम जूठन न करेंI हम उतना ही लें जितना खाना है
देखिए बदलाव के लिये यही तो रास्ते होते हैं
और जो लोग शरीर स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक होते हैं वो तो हमेशा कहते हैं पेट भी थोड़ा ख़ाली रखो प्लेट भी थोड़ी ख़ाली रखो
और जब स्वास्थ्य की बात आई है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है वर्ल्ड हेल्थ डे
संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानि कि सबको स्वास्थ्य का लक्ष्य तय किया है
इस बार यूनाइटेड नेशंस ने 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डिप्रेशन विषय पर फोकस किया है
डिप्रेशन ये इस बार की उनकी थीम है
हम लोग भी डिप्रेशन शब्द से परिचित हैं लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ करना है तो कुछ लोग उसको अवसाद भी कहते हैं
एक अनुमान है कि दुनिया के अन्दर 35 करोड़ से ज़्यादा लोग मानसिक रूप से डिप्रेशन से पीड़ित हैं
मुसीबत ये है कि हमारे अगलबगल में भी इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं और शायद इस विषय में खुल कर के बात करने में हम संकोच भी करते हैं
जो स्वयं डिप्रेशन महसूस करता है वो भी कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है
मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है
एक मनोवैज्ञानिक माहौल पैदा करना होता है और उसकी शुरुआत होती है
पहला मंत्र है डिप्रेशन के सप्रेशन की बजाय इसके एक्सप्रेशन की ज़रूरत है अपने साथियों के बीच मित्रों के बीच माँबाप के बीच भाइयों के बीच टीचर के साथ खुल कर के कहिए आपको क्या हो रहा है
कभीकभी अकेलापन ख़ास कर के होस्टेल में रहने वाले बच्चों को तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है
हमारे देश का सौभाग्य रहा कि हम लोग संयुक्त परिवार में पलेबढ़े हैं विशाल परिवार होता है मेलजोल रहता है और उसके कारण डिप्रेशन की संभावनायें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन फिर भी मैं माँबाप को कहना चाहूँगा कि आपने कभी देखा है कि आपका बेटा या बेटी या परिवार का कोई भी सदस्य पहले जब आप खाना खाते थे सब लोग साथ खाते थे लेकिन एक परिवार का व्यक्ति वो कहता है नहीं मैं बाद में खाऊंगा वो टेबल पर नहीं आता है
घर में सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहता है नहींनहीं मुझे आज नहीं आना है अकेला रहना पसंद करता है
आपका कभी ध्यान गया है कि ऐसा क्यों करता है आप ज़रूर मानिए कि वो डिप्रेशन की दिशा का पहला क़दम है अगर वो आप से समूह में रहना पसंद नहीं करता है अकेला एक कोने में चला जा रहा है तो प्रयत्नपूर्वक देखिए कि ऐसा न होने दें
उसके साथ खुल कर के जो बात करते हैं ऐसे लोगों के साथ उसको बीच में रहने का अवसर दीजिए
हँसीख़ुशी की खुल कर के बातें करतेकरतेकरते उसको एक्सप्रेशन के लिये प्रेरित करें उसके अन्दर कौनसी कुंठा कहाँ पड़ी है उसको बाहर निकालिए ये उत्तम उपाय है
और डिप्रेशन मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बन जाता है
जैसे डायबीट्स हर प्रकार की बीमारियों का यजमान बन जाता है वैसे डिप्रेशन भी टिकने की लड़ने की साहस करने की निर्णय करने की हमारी सारी क्षमताओं को ध्वस्त कर देता है
आपके मित्र आपका परिवार आपका परिसर आपका माहौल ये मिलकर के ही आपको डिप्रेशन में जाने से रोक भी सकते हैं और गए हैं तो बाहर ला सकते हैं
एक और भी तरीक़ा है अगर अपनों के बीच में आप खुल करके अपने एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हों तो एक काम कीजिए अगलबगल में कही सेवाभाव से लोगों की मदद करने चले जाइए मन लगा के मदद कीजिए उनके सुखदुःख को बाँटिए आप देखना आपके भीतर का दर्द यूँ ही मिटता चला जाएगा उनके दुखों को अगर आप समझने की कोशिश करोगे सेवाभाव से करोगे आपके अन्दर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा
औरों से जुड़ने से किसी की सेवा करने से और निःस्वार्थ भाव से अगर सेवा करते हैं तो आप अपने मन के बोझ को बहुत आसानी से हल्का कर सकते है
वैसे योग भी अपने मन को स्वस्थ रखने के लिये एक अच्छा मार्ग है
तनाव से मुक्ति दबाव से मुक्ति प्रसन्न चित्त की ओर प्रयाण योग बहुत मदद करता है
21 जून अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये तीसरा वर्ष होगा
आप भी अभी से तैयारी कीजिए और लाखों की तादाद में सामूहिक योग उत्सव मनाना चाहिए
आपके मन में तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में अगर कोई सुझाव है तो आप मेरे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने सुझाव मुझे ज़रूर भेजें मार्गदर्शन करें
योग के संबंध में जितने गीत काव्यमय रचनायें आप तैयार कर सकते हैं वो करनी चाहिए ताकि वो सहज रूप से लोगों को समझ आ जाता है
माताओं और बहनों से भी मैं ज़रूर आज एक बात करना चाहूँगा क्योंकि आज हेल्थ की ही चर्चा काफ़ी निकली है स्वास्थ्य की बातें काफ़ी हुई हैं
तो पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है
हमारे देश में जो वर्किंग क्लास वूमेन हैं कामकाजी वर्ग में जो हमारी महिलायें हैं और दिनोंदिन उनकी संख्या भी बढ़ रही है उनकी भागीदारी बढ़ रही है और ये स्वागत योग्य है लेकिन साथसाथ महिलाओं के पास विशेष ज़िम्मेवारियाँ भी हैं
परिवार की ज़िम्मेवारियाँ वो संभालती हैं घर की आर्थिक ज़िम्मेवारियाँ भी उसकी भागीदारी भी उसको करनी पड़ती है और उसके कारण कभीकभी नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है
भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है
ये जो कामकाजी वर्ग की महिलायें हैं उनको प्रसूति के समय प्रेग्नेंसी के समय डिलिवरी के समय मैटर्निटी लीव जो पहले 12 सप्ताह मिलती थी अब 26 सप्ताह दी जाएगी
दुनिया में शायद दो या तीन ही देश हैं जो हम से आगे हैं
भारत ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फ़ैसला हमारी इन बहनों के लिये किया है
और उसका मूल उद्देश्य उस नवजात शिशु की देखभाल भारत का भावी नागरिक जन्म के प्रारम्भिक काल में उसकी सही देखभाल हो माँ का उसको भरपूर प्यार मिले तो हमारे ये बालक बड़े हो करके देश की अमानत बनेंगे
माताओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इसलिये ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है
और इसके कारण फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली क़रीब 18 लाख महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा
मेरे प्यारे देशवासियो 5 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व है 9 अप्रैल को महावीर जयंती है 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मजयंती है ये सभी महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता रहे न्यू इंडिया के लिये संकल्प करने की ताक़त दे
दो दिन के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर इस नववर्ष के लिये आपको बहुतबहुत शुभकामनायें
वसन्त ऋतु के बाद फ़सल पकने के प्रारंभ और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने का ये ही समय है
हमारे देश के अलगअलग कोने में इस नववर्ष को अलगअलग रूप में मनाया जाता है
महाराष्ट्र में गुड़ीपड़वा आंध्रकर्नाटक में नववर्ष के तौर पर उगादी सिन्धी चेटीचांद कश्मीरी नवरेह अवध के क्षेत्र में संवत्सर पूजा बिहार के मिथिला में जुड़शीतल और मगध में सतुवानी का त्योहार नववर्ष पर होता है
अनगिनत भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है
आपको भी इस नववर्ष की मेरी तरफ़ से बहुतबहुत शुभकामनायें
बहुतबहुत धन्यवाद